दिखाई दे रहे है ऊपर जलता हुआ झूमर भी दिखाई दे रहा है छोटी छोटी सफेद लाइटे भी जलती हुई दिखाई दे रही हैं।

यह एक कमरा है कमरे के अंदर एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दे रहा और बाहर एक लाल कलर का सिलेंडर भी--

रंग है नीला रंग है कई सारे रंग बिरंगे कपड़े भी यहां पे--

पेहेन रखी हो पीछे पीछे कई अम्म बड़े-बड़े घर भी देखाई दे रहे हैं घर का रंग हरा भी दिखाई दे रहा है ऑरेंज कलर भी दिखाई दे रहा --

और बहुत सारी दुकानें बनी हुई दिखाई दे रहे हैं उसके ऊपर कई सारे बोर्ड लगे हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें लिखा है जीवन सुरक्षा केंद्र दवाखाना फा--

दिखाई दे रहे हैं जो की कमरा है उसके उसकी घड़ीयों का रंग नीला दिखाई दे रहा है यहां पे कुछ पोस्टर भी लगे हुए दिखाई दे रहें--

यह एक रोड किनारे का एरिया है जहां पे दो बाइक खड़ी हुई दिखाई दे रही एक दुकान है दुकान के ऊपर एक--